ये एक डैम का दृश्य है जहां पर बहोत सारे पानी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

इसका कलर ऑरेंज ब्लू रेड और ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है।

डैम के चारों तरफ बहुत सारे लोहे लगाए गए हैं।

उसके बगल में एक टेबल रखा हुआ है जिस पर फोन रबल रखा हुआ है।

एक नाव में बहुत सारे व्यक्ति बैठे और दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर आसमान में पंछी उड़ते हुए भी दिखाई दे रहे है।

इस पर मानसरोवर स्टेनरी लिखा हुआ है।

जिसके ऊपर करकट लगाया गया है नीचे की तरफ लोहे के मदद से पिलर भी लगाए हुए हैं।

इसके बगल में एक लकड़ी के मदद से घर भी बनाया गया है।

ये एक दुकान का दृश्य है जहां पर ऊपर की तरफ एक बैनर दिखाई दे रहा है जिस पर आइसक्रीम वाला लिखा हुआ है।

जहां प सामने बहुत सारे पौधे लगाए गए है जो हरे कलर में हैं।

ऊपर आ सीलिंग पर बहुत सारे पंखे लगाए गए हैं।

उसके नीचे एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है जिसके छत पर चोंगे लगे हुए हैं।

ये एक बिल्डिंग का दृश्य है जिसके दीवाल का कलर व्हाइट और ब्लू कलर में है।